रंग भूरा है ह्ह् और सामने एक नागरिक दिखाई दे रहा है जो इस केस काली पेंट पहने हुए है और इस --

और इस इमारत का रंग सफ़ेद है और यहाँ पर एक स्टूल लुमा चीज भी रखी हुई है जिसमे सामने एक जंगीर भी लगी हुई है।

एक ठेला वा है ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है जिसने लाल रंग का कपड़ा डाला हुआ है।

मुख्तलिफ रंगों मे खिले हुए है इनमे से कुइ बाज़ का रंग पीला पा बाज़ का लाल और

यहाँ पर बहुत सारे मोटरसाइकिले और मजूद है जिनमे जिन का रंग मुख्तलिफ है ।

का रंग जैसा और डिजाइन है और यहां पर एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई दे रही है जो कि--

इसके ऊपर हरे रंग के पर्दे भी डाले हुए हैं और बहुत ज्यादे--

के ऊपर इजेट लिखा हुआ है और ये यहाँ पर एक बहुत बड़िया अमारत है जिसका रंग अम्म सफेेद है ।

और इन में से एक इन में से मु बच्चे ने मुहारत अम्म तरह से मुख्तलिफ तरह से काम कर रहे है ।

इन गमलों कर डिजाइन मुख्तलिफ है येई कोेई किसी शैप में बना हुआ है तो कोई किसी में--